और आगे मे राइट साइड मे एक ग्रीन मैट दिख रहा है और सामने--

यहां बच्चे फुटबॉल खेलने आए हुए हैं।